यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए साइडों में--

अंदर कुछ गमलों में पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक नर्सरी है जिसमें काफी सारे गमलों में पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर एक पेट्रोल पंप है जहां से कुछ गाड़ियां जा रही हैं।

एक लड़का बैठा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है ऊपर से ब्लैक कलर के जैकेट पहमन रखी है यहां पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर दो नाव खड़ी हुई है।

टी-शर्ट पहन रखी है यहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

झूमर लगे पर दो गद्दे रखे हुए हैं यहाँ पर वाइट कलर के सोफे रखे हुए है।

यहां पर एक नर्सरी है जहां पर काफी सारे गमलों मे --

यहां पर नसरी है यहां पर काफी सारे --

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ग्रीन कलर की टीशर्ट पहनी राखी है कैप लगा रखा है।

यहां पर काफी सारी बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक स्प्राइट की बोतल राखी हुई है यहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई है यहाँ पर एक स्टूल रखा हुआ है ।